वाटर बॉटलस बेचता है और बिस्किटस भी बेचता है और चिप्स भी बेचता है।

बाईकें हैं और एक व्हाइट कलर की गाड़ी है और एक साइकल इसमें रखा--

ये स्कूल का एनुअल डे है इसमें बहुत सारे बच्चों ने --

और ग्यारह लैपटॉप भी है ये बहुत बड़ा कमरा --

खड़ा है और दो चार बच्चे और दो चार मजदूर भी है जो गढ्ढे खोद रहे हैं।

इसमें लगभग पाँच आदमी नहा रहे हैं।

एक दूसरे से खेल भी रहे हैं ये बहुत बड़ा जरना --

सफेद कपड़े पहन के और मासिक लगा कि व्हाइट टोपी लगा--

यह संगीत समोरन चल रहा है इसमें दो औरतें और एक मर्द खड़ा --

यह एक जरना बहता हुआ जरना है।

इसमै बहुत सारे पेड लगा के हैं और आगे पीछे बहुत सारे --

मकान बना के हैं ये बहुत सारे बिल्डिंग्स बना के हैं।

और एक बड़ा सा कमरा है इसमें गार्ड और पुलिस भी है।

और इरदगिरद थोड़े से पेड़-पौधे हैं।

एक चल रहा है दो खड़े हैं और एक स्कूटी पे भी है।

वे यहां पे फूल वाले फूल बेच रहे हैं।

ये किरियानी की दुकान है इसमै --

कलर कर के हैं और दो लकड़ियाँ --

और यहाँ पे छे बंदे देख रहे हैं।

ये तीन मंज़िला मकान हैं --

इसमें बोहोत सारे पेड़ हैं और बोहोत सा --

आंखों के बालों के और चेहरों के--

ये मिठाई की दुकान है।